ऑफिस का सीन हैं और ये ऑफिस का सीन हैं ये लिखा पड़ी कर रहा हैं सब बड़े।

इस प्रकार की इस मे दवाइयाँ मिलती हैं और ग्राहक लोग आते हैं लेने।

इनको पैर में कुछ हो गया हैं कुछ गढ़ गया हैं या कुछ चोट लग गया हैं इस वजह से इन का पैर का ट्रीट्मन्ट हो रहा हैं इलाज हो रहा हैं।

पहाड़ देखने मे बड़ी सुंदर लग रहा हे और पहाड़ पे प्रकाश है जिस वजह से लाइट है बहुत अच्छा

पट्टे लेटा हुआ है आदमी सायद ये सोने के फेर में है की जोकिंग कर रहा है इ पता नहीं चल्ला है।

लेकिन पट्टे पड़ा हुआ है इ दिखाई दे रहा है और अच्छा रूम है पीला रंग का पर्दा है।

इनोवा क्रिस्टाल दिख रहा है बांकि लोग सब इन्जॉय कर रहे हैदेख रहे है अ पूल किनारे|

सब तरह के साज सज्जा के साथ इसमे गायन हो रहा है।

और ये मंदिर हैं मंदिर जो हैं सब टोपी लगैले है| गणेश भगवान का फोटो हैं और सब लोग टोपी लगा - लगा के बैठ के फोटो खिचवा रहा है

इश्कूल मे खरी कोई प्रोग्राम हो रहा है जो देख रही है शबलोग --